यहाँ मार्केट है मार्केट में बहुत सारे चींजे बिक रहा है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है इसमें दो आदमी है।

व्यापारी बैठे हुए हैं | एक भी कस्टमर नही आए हैं | बहुत सारे ब्लब भी जल रहे हैं | कार्टून रखा हुआ है | देखने मे अच्छा लगा --

यह एक पूल है इसको लोह सुंदर है इसमें पंखा लगा हुआ है बल्ब जल रहा है टाइल्स लगा हुआ है।

दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है आसमान भी दिख रहा है आसमान में --

यह मकान है मकान बहुत सुंदर है दिख रहा --